दिन का समय है कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।

डबल एट डबल एट वन और एक मोबाइल नंबर और है।

सामने लिखा है ओम जनरल स्टोर ।

हमारे यहां पर हर प्रकार का किराणे जनरल स्टोर --

इस फोटो में एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने डेनिम जींस पहनी हुई है और ब्लैक कलर की जो है उसने ऊपर से--

ठीक है एक पंखा लगा है और ये जिम के अंदर का फोटो दिखाई दे रहा हैं।

ठीक है लेकिन वैसे रात का समय एक पेड़ भी दिख रहा है।

और यहां पे एक लोटा रखा हुआ आसपास देखो--

इस फोटो में एक बच्चा दिखाई दे रहा है जिसने पीले रंग की टी शर्ट पेहनी है।

आस पास कुछ स्टाइल दिखाई दे रही है ठीक है और नीचे कपड़ों की दुकान और टॉयज भी दिख रहा है अंदर--

ठीक है यहां पे देखो टॉफी चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक चिप्स के पैकेट दूध दही लस्सी यह सब यहां मिलेगा जो भी मतलब हमें घर में चीजों की जरूरत होती है वो सारी चीजें मिलेंगी।

अब इस फोटो में यहां पर एक सड़क दिखाई दे रही है ठीक है सड़क पे एक बाइक दिखाई दे रही है और यहां पे कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं दिन का समय है बिजली की तारे भी दिख रही है एक सफेद रंग की कार दिखाई दे रही है।

इस फोटो में काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।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

दरवाजा जो है वो ब्लैक कलर का दिखाई रहा है और दिन का समय दिखाई दे रहा है यहाँ पे काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक कार खड़ी हुई है जो सफेद रंग की और काफी सारे एक्टिव आगे खड़ी हुई हैं।

बिल्डिंग यहां पे ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है एक इंस्टीट्यूट है ये ठीक है।

फ्रूट रखा हुआ है। दिन का समय है इसके पास क्यूंकि बहार से रोशनी आ रही है यहां पर --

एक अलमारी भी रखी हुई है पर्दे लगे हुए ब्राउन कलर के।

फर्श पर व्हाइट कलर की टाइल लगी हुई है और सामने--

सामने लिखा हुआ है बंधन बैंक और साइड में बंधन बैंक ए_टी_एम --

और झाड़ियां दिखाई दे रही है पत्थर दिखाई दे रहें हैं काफी बड़े बड़े से--

सामने लिखा है हर्ष कलेक्शन एंड चूड़ी भंडार मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है नाइन एट नाइन सिक्स --

और यहां पे लोग काम कर रहे हैं दीवार जो है उस पे पेंट नहीं हुआ रखा है।

दरवाजे हैं जो ब्राउन कलर के हैं सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं जो ब्लैक कलर की हैं और यहां पर लाइट्स लगी हुई हैं।

इस फोटो में लड़का दिखाई दे रहा है जिसने पूमा की ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई है।

यहां पे एक डीप फ्रीजर दिखाई दे रहा है काउंटर है।

कुछ बोर्ड है जिसपे चार्जर लगा रखा है इसने--